दूर की साइड एक टंकी भी दिखाई दे रही है पानी की।

यहां पर कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर एक पानी में एक लकड़ी पड़ी हुई है।

यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

समान पेटी वगैरा रखा है एक आदमी इस तरफ देख रहा है।

जिसमें मेडिकल लिखा हुआ है।

का मैदान लगा हुआ है।

यहां पर एक गेट और एक नंबर भी लिखा हुआ है।

कुछ महिला बैठी हुई हैं।

यह एक जंगल दिखाई दे रहा है जहां पर--

आइसक्रीम के फोटो लगे हुए हैं।

ब्लैक कलर की कुर्सियां हैं पीछे एक बस भी खड़ी है।